यह एक मेडीकल स्टोर है ।

यहाँ पे कक्षा नर्सरी से लेकर दसवीं तक की पढ़ाई होती है।

यह मेडिकल में बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई है।

और यहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल बनाया गए है इस पंडाल को बहुत अच्छे से फूलों से लाईटों से सजाया गया है।

यह एक स्कूल है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रोज पढ़ने आते हैं।